लाल कलर से हरि भाई चश्मे वाले लिखा हुआ है और बहोत सारे आदमी लाइन से खड़े हुएं हैं।

लाल नीले पर्दे लगे हुए हैं और ऊपर पिंक कलर की दीवार है।

लंग बिरंगे फूलों की झालर लगी हुई है और साइड में दो मोर रखी हुई हैं और साइड में बहोत सारी कुर्सियां --

कुछ बड़े पोस्टर लगे हुएं हैं मोटरसाइकिल खड़ी हुईं हैं बाहर और कुछ दुकानें दिखाई दे रहीं हैं पेड़ दिख रहें हैं।

हुई है और एक आदमी बैठा हुआ है और नीचे लक्ष्मी जी और विष्णु जी की --

राम ग्रिसला टायर्स लिखा है और नीचे बहुत सारे प्रकार के टायर छपे हुए हैं कैट अपोलो ।

कुर्सी रखी हुई है सामने एक आदमी बैठा हुआ है जिसके हाथ में पेपर है और इसके अ पीछे कुछ अ सीढ़ियां दिख रही हैं।

कुछ लड़कियां टेबल पर कॉपी पेन रखे हुएं हैं पानी की बॉटल रखी हुई--